यह एक मोबाइल कभर की दुकान है। यहां बहोत सारे कभर लगे हुए हैं।

एक टीचर हैं जो खड़े हैं जो बच्चे को समझा रहे हैं।

बहोत सारी लाइटे पंखा और ए_सी लगा हुआ है।

यह एक पराठे का चित्र है।

यहां पे हरे रंग का चद्दर भी रखा हुआ है।

यहां पे स्विच बोर्ड है जिसमें प्लग लगा हुआ है।

यहां पे बहुत सारे आदमी स्नान कर रहे हैं उसके बगल में एक घर बना हुआ है।

यह एक मॉल का चित्र है। इस मॉल का नाम भी टू है।

मॉल के अंदर बहुत सारी लाइटें जल रही है बहुत सारे आदमी मॉल के अंदर कपड़े देख रहे हैं।

चार दीवारी के ऊपर रेलिंग दिया। उसमें जाली लगा हुआ है। यहां पे सैंडिल खोल के रखा हुआ है।

यहां पे जो औरत है उनके हाथ में चूड़ियां है।

यहां पे ड्रीम बिग लिखा हुआ है।

यह एक घर का चित्र है यहां बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है जिसका कलर ब्लैक है।

यहां बहुत सारे सोफ़ा नजर आ रहे हैं।

उसके सामने एक स्कूटी लगा हुआ है।

होटल के अन्दर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है होटल के अन्दर लाइटे लगी हुई है।

यह एक बहुत बड़ा टावर है इसमें लाल रंग का रंग किया हुआ है ।

पीछे एक पिंक कलर का फ्रॉक टंगा हुआ है।

यहां एक लड़के का हाथ में एक मोबाइल नजर आ रहा है।

दुकानों के ऊपर पीले रंग का त्रिपाल लगे हुए हैं।

उसके सामने यहा पे सुख्या जमीन है।

दोनों सफ़ेद गाड़ी के ऊपर ब्लू रंग की बत्ती है।